बनने पर खाना मिल जाता है और खाके चले जाते है यहाँ भी--

सीमेंट का उत्पादन किया जाता है इस इस शहर गांव मे --

ते गांव में यहाँ राशन मिलता है।

आरोग्य यहाँ सुधारी की जाती है।

पसंद से जो भी कपड़े है यहाँ से--

होलसेल कपड़ो के दुकान है छोटे बड़े सभी यहाँ आते है ले जाते --